पानी का रंग काला दिख रहा है दो कबूतर जो है उनका रंग भी काला दिख रहा है और वो पानी मे आधे डुबे हुए है पानी का बहाव बहुत धीमा है तेज --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

यहाँ एक शादी हॉल हैं उस शादी हॉल पे एक स्टेज बनाया गया हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की कुर्सी रखी हुई हैं।

सामने कांच लगा हुआ है उसके ऊपर एक एल लगी हुई है जिसमे कोई सीरियल चल रहा है पीछे दीवार बनी है उसपे टॉवल र--

एक डॉक्टर खड़ी हुई है वहाँ एक नर्स भी है न्यू डस्टबिन रखी हुए है बेड के पीछे मशीन लगी हुए है वहाँ पर बड़ी वाली।

मिट्टी पड़े हुए है और तगाड़े भी पड़े हुए है एक बाल्टी भी रखी हुई है कुछ लोग है जो ऊपर छत पे काम कार रहे है नीचे ग्राउन्ड है वहाँ पे बड़े- बड़े --